और कुर्सी भी रखी हुयी है लाइटें भी जल रही है और यहाँ पर बोहोत सारे रोशनदान भी दिखाई दे रहै हैं।

जैसा की में देख पा रही हूँ यहाँ पर लाल कवर चढ़ी हुयी माताजी की --

की किताबे है और इसमें लक्ष्मी जी की भी फोटो लगी हुई है।

और ये यहाँ पर भगवान का सामान है यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर भी है।

और यहाँ पर टोकरियाँ भी रखी हुई हैं और यहाँ पर बर्तन भी --

फर्स ग्राउंड और पिले रंग के टाइल्स लग रहै हैऔर यहाँ पर पेड़ भी हरे.

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रहा है जिसका कलर हरे कलर का है और दरवाजा भी भूरे कलर का है |

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक घर है जहाँ पर शटर लगा हुआ है जिसका कलर भूरे कलर का है एक खिड़की भी बनी हुई हैं।

जैसे की जैसे की में देख पा रही हूं ये एक मंदिर है यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि पिंक कलर की शर्ट टीशर्ट पहने है और ब्लैक कलर की लोवर हरे कलर के पीछे पेड़ भी लगे हुए है।

और यहाँ पर मंदिर का कलर भी हरे और सील ब्राउन में है।

लाल हरी बैंगनी पिंक वाइट कलर से इमारते भी खड़ी हुई है।

और यहाँ पर डालियाँ भी दिख रही है भूरे कलर की जमीन हैं।

जोकि वाइट कलर की टी - शर्ट पहने हुए है |

एक कैलेंडर है जिसमें सरस्वती जी की फोटो लगी हुई है।

और फर्श जमीन हमारी भूरे कलर की है।

और यहाँ पर चार्ट भी रखे हुए है।

और यहाँ पे एक वेन भी है वाइट कलर की--

जैसा की में देख पा रही हु की एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका कलर थोड़ा सा पिंक और यल्लो में है भूरे कलर का बॉडर भी बना हुआ है जमीन का कलर थोड़ा भूरे कलर का है।

और जिसकी का कपड़े कपड़े चेकदार है और यहाँ पर जनजीर भी हैं।

जैसे की में देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी एक औरत को को चाबी दे रहा है जो कि बैगनी कलर की शर्ट पहने हुए और लाल कलर की साडी औरत पहने हुए --

और यहाँ पर नीले कलर से इसे रोलिंग टाइप का बना हुआ है जोकि जोकि पानी हरे कलर का दिख रहा है और इसमें किनारे -किनारे पेड़ भी लगे हुए --

जैसा की में देख पा रही हु यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुहे है जे जो यहाँ पे कुर्सीया जो हैं।

रॉड भी वाइट कलर की है एक सामने एक बैगनी कलर का पर्दा भी है।